तस्वीर में हम देख सकते है की हमे काफी ऊंचाई तक दूर दूर से फैले से पहाड़ नजर आ रहे हैं | तस्वीर में हमे खूब सारी हरियाली दिख रही हैं|

इस तस्वीर मे देखा जाए तो हमे दूर दूर तक हरियाली ही हरियाली नजर आ रही है तस्वीर की शुरुआत मे ही दाई ओर बाई ओर हमें कुछ मिट्टी और छोटे छोटे से पत्थर भी दिख रहे हैं।

यह किसी कोचिंग सेंटर या ट्यूशन सेंटर के --

इस तस्वीर को देख कर ऐसा लगता है कि यह किसी ट्रेन के अंदर से ली गई तस्वीर है| तस्वीर में सामने ही एक बिल्डिंग है जोकि पुरानी सी और पीले पीले से रंगी है।

इस तस्वीर में हम काफी सारी कुर्सियाँ देख सकते है जोकि काले रंग की है। तस्वीर में हमे काफी सारे बलून्स रखे हुए भी दिख रहे है।

इस तस्वीर में सामने ही एक बोर्ड है जिस पर लिखा हुआ है फैशन पॉइंट जाहिर सी बात है --

यह एक फैशन पॉइंट के सामने की तस्वीर है। इस तस्वीर में नीचे स्वीट्स भी लिखा हुआ है शायद यहाँ एक मिठाइयों की दुकान भी हो सकती है।

जाहिर सी बात है यह डेंटल क्लिनिक की तस्वीर है| इस दरवाजे के अंदर जाने पर दांतों का इलाज किया जाता होगा।

तस्वीर में हम सामने ही देख सकते हैं एक बोर्ड लगा है जिसपे लिखा है यामाहा एसपी मोटर्स जाहिर सी बात है यह एक मोटर्स की शॉप के दुकान --

अंदर के टेबल की तस्वीर है जिस पर हमे अशोक स्तम्भ की एक ट्रॉफी और दो तिरंगे नजर आ रहे हैं।

इस तस्वीर को ध्यान से देखा जाए तो यह एक बस-स्टैन्ड की तस्वीर लगती है जहां पर बहोत सारी बसेस को खड़ा किया जाता है।

इस तस्वीर मे भी हम काफी सारी बसिस को देख सकते है जोकिं खड़ी हुई है। इन का रंग मुख्यतः पीला है।

यह किसी केक शॉप की बाहर की तस्वीर लगती है। इस तस्वीर मे हमे काफी बड़े-बड़े से केक रखे हुऐ नजर आ रहे हैं।